यहां कुर्शी है यहां पब्लिक है।

अउ उधर साइड साइड में पेड़-पौधा है।

इधर आदमी-वादमी भी बैठे-उठे है पार्क टाइप का है ।

ये गुफा है कि क्या है? बहुत पुराना से बना हुआ है मूर्ति बहुत पुराने जमाने के मूर्ती है यहां पर दिखाई दे रहा है पेड़ पौधा --

अच्छे नए-नए स्कूटी है अउर ऊपर में फुवावा लगा हुआ है आउ --

पुरुष मोबाइल मोबाइल से सेल्फी सेल्फील्फी ले रहा है और एक बंदा मोबाइल वाइल चिमक रहा है और आगे आगे तरफ कंघियों घीर रखा हुआ है और डब्बा में पानी उनी ये नई दुकान टाइप का दिख रहा है और घड़ा उड़ा में पानी ठंडा पीने के लिए पानी रखा हुआ है।

पर्दा वरदा अगल- बगल में कोई कॉलर टैग भी दिखत हे।

रखा हुआ है और बहुत पानी सारा दिखाई दे रहा है।

यहाँ महिला लोग पूजा-पाठ करने के लिए आए है अउ और बगल में पड़े-पौधा--

कोई और गाड़ड़ी खड़ा है बाहर में पार्किंग --

और स्कॉर्पियो खड़ा उड़ा है और मथल-उथल है और दरवाजा बड़ा-बड़ा लगा हुआ है और इधर प्लस कंप्लीट हो गया है आदमी लोग --

पुरुष लोग इसमें चला रहे है बड़े मजे से और--

कुरेसी का दुकान शटर उटर दिखाई दे रहा है और इसमें आदमी भी दिखाई नइ दे रहा है।